एक दुकान दिखाई दे रहा है।

डाक घर है जो की कलर किया हुआ है बाहर में।

में लिखा हुआ है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग।

एक चाय भी बनाता है और इस इसमें --

एक बोर्ड लगा हुआ है सतर्क इनसे सावधान रहें।

यहां एक झरना नजर आ रहा है ऊपर से नीचे पानी बह रही है और जंगल उंगल ये बड़ा-बड़ा पत्थर भी --

खड़ा है जो की एक्सरसाइज कर रहा है हाथ ऊपर किया हुआ है अंगूठा दिखा रहा है बॉडी बना रहा है।

बहुत बड़ा मंदिर नजर आ रहा है और बहुत सारा --

यह एक मार्केट है जो की बहुत सारा दुकान है यहाँ मछली बिकती है बहुत सारे दूकानदार हैं यहाँ पे।

बैठे हैं मछली बना रहें हैं और कस्टमर भी बहुत है भीड़ लगी हुई है पूरा।

पूरा लाइट उट है यहां पे बाहर में चेयर्स भी बहुत सारे --

दा पर लगा है और बहुत सारे टेबुल है।